पीछे ग्रीन कलर का बेनर है जिस पर कृषि महाविद्यालय अनुसन्धन केंद्र रायगढ़ मध्य प्रदेश है जहां आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा हुआ है ।

ये पत्थड अ एक पत्थडो का झरना है जिसमें से पानी बेह रहा है।

कुछ इस पर अ मेटल है उस पर कुछ लव लिखा हुआ है।

ये एक स्टेशन है इस पर रायगड़ डला हुआ है और रेलवे स्टेशन है जिस पर रायगड़ डला हुआ है ब्लू कलर की।

मालगाड़ी है पीछे स्टेशन का छत है और साइड सेअ ये टोर्च लगी हुई है जिस पर यह बैनर बना हुआ है नीचे जमीन पर थोड़ी काई हैं।

शॉप है जिस पर अरुण फेशन हाउस लिखा हुआ है अंदर कुछ क्लॉथ वगेरा है।

एक कांच की बिल्डिंग है उसपे ऊपर से दो आदमी खड़े हुए हैं और कुछ केबल है एक बैनर बना हुआ है उस पर यूनिवर्सल स्पोर्ट्स लिखा है उसके अंदर एक आदमी खड़ा है बाहर एक डस्टबिन रखी हुई है।

ये एक स्टेशन का इमेज है जिस पर रायगढ़ डला हुआ है कुछ लोग जा रहे हैं एक मालगाड़ी है जिसके साइड में एक अ मालगाड़ी है जिसका कुछ अ डम्मल रखा हुआ है ।

साइड में जो डिवाइडर है वो ब्लू येल्लो और ब्लैक कलर का डिवाइडर